यख मा जी कुछ बच्चा राष्ट्रीय सेनानी छन बण्या हाथ पर उन तिरंगा झंडा छ लिन्यू अर बिच मा जी सरस्वती माता भी छा पिछाड़ी बिटिन आप ते स्कूल कु नौ भी होलु दिखेण लग्युं बड़ा बड़ा अक्षरों मा जी।

फोटो मा जी आप तें दिखण लग्युं की यख मा एक मार्किट छा जख मा जी आप ते बहोत सारी गाड़ी कुछ सब्जी मंडी और रिक्शा वाला भी होला दिखेण लग्यां।

पिछाड़ी बटिन आप तें एक बैंक को बोर्ड ह्वल दिख्येण लग्युं जे पर छ लेख्यु बंधन बैंक अर ऐच बटिन आप तें भोत सारा तार बाडा और कुछ माकन भी ह्वल दिख्येण कु मिल लग्यां।

फोटो मा जी आप देख सकदें की यख मा जी बच्चों का हाथ पर अलग अलग रंग छन यख मा जी रंगोली छन बनोड़ लग्यां चौक बिटिन पेली आकृति बणाई वांका बाद रंग बिटिन उं ते भर्न छन लग्यां।

पिछाड़ी बिटिन आप तें हरयाँ भर्यां पेड़ पौधा और गमला होला दिखेण लग्यां।